कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कुछ न सफेद बनियान पहन रखी--

एक लोहे की रेलिंग दिखाई दे रही है बगल मे बड़ी सी दीवार दिखाई दे रही है जंतर मंतर की --

कुछ लड़कियां खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं कुछ लड़के खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लड़के बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बच्चे बैठे हुए हैं पंखा दिख रहे है दे रहा है।

हॉल का गेट चैनल गेट दिखाई दे रहा है।

हमें कई सारी बिल्डिंगे दिखाई दे री है।

एक येलो कलर की पट्टी नजर आ रही है।